इस चित्र में एक तालाब है जिस पर काई आ रही है।

इस बोर्ड का रंग हरा है और इस पर पट्टी सफेद कलर की है।

और कुछ स्टील का है इनमें कोंचा है।

और इसमें एक दुकान है जिस पर नीले कलर का पेंट से हुआ है।

यह एक चित्र है यह चित्र किसी शादी का है।

इस कमरे में एक घड़ी लगी हुई है और इस कमरे में दो या तस्वीर लगी हुई है।

और इसमें एक औरत है जो की जहाज में जा रही है।